meet the gimp में आपका स्वागत है यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
पिछले संस्करण में मुझे यह image editing के बाद यहाँ प्राप्त हुई है
और आज मुझे लगता है कि मुझे रंगों को set करने के लिए कुछ करना चाहिए
क्योंकि यह image अत्यधिक हरी है
यहाँ रंग को समायोजित करने के बहुत से तरीके हैं और उनमें से एक curve tool है
मैं tool box में curves tool पर click करता हूँ और फिर मैं green channel का चयन करता हूँ और curves को नीचे खींचता हूँ
अब आप देख सकते हैं कि image में रंग चैनल और कोहरा असली कोहरे की तरह लग रहा है
अब मुझे curve को इस तरह से समायोजित करना चाहिए कि मुझे एक ऐसी छवि प्राप्त हो जाए जो gray रंग की हो और हरे या मैजंटा रंग की न हो
मैं curves tool का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यह image के विवरणों को नुकसान पहुंचाता है और मैं उसके बाद क्षतियों को ठीक नहीं कर सकता हूँ
मैं अनडू tool का उपयोग कर सकता हूँ लेकिन मुझे उसके बाद सभी चरण पुनः दोहराने होंगे
अतः मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे image को कोई नुकसान नहीं होगा और मैं बाद में उसे समायोजित कर सकता हूँ
यहाँ एक ऐसा तरीका है जो लेयरों के साथ एक साधारण filter का उपयोग करता है
इसलिए मैंने यहाँ layer dialog खोल layer है
आपको यहाँ background दिखाई देगा जो हमारी मूल image है
और मैं बस एक नई layer जोड़ता हूँ और मैं layer fill type में सफेद रंग का चयन करता हूँ और इसे color correction green name देता हूँ
अब मेरी image पूरी तरह से सफेद है लेकिन मैं layer mode को बदल सकता हूँ
layer mode एक algorithm है जो दो परतों यानी मूल background layer और नव निर्मित layer को जोड़ता है
अतः मैं यहाँ एकाधिक mode का चयन करता choose
और आपको मूल image वापस प्राप्त हो जाती है जैसी यह पहले थी
multiply mode background के pixels को foreground के pixels से गुणा करता है और परिणाम को 255 से विभाजित करता है
और एक सफेद तस्वीर में कुल रंग चैनल 255 होते हैं अतः 255 से गुणा करने पर और 255 से भाग देने पर प्रारंभिक बिंदु यानी background प्राप्त होता है
किन्तु यदि मैं नई layer में से एक channel को कम करता हूँ तो यह background में भी कम हो जाएगा क्योंकि 200 से गुणा करने और 255 से विभाजित करने पर कम परिणाम प्राप्त होता है
अब मैं इस तरह के एक रंग का चयन करना चाहता हूँ जिसमें green channel की कमी है
यहाँ here पास foreground रंग के रूप में काला रंग है जिसे मैं background रंग में परिवर्तित करता हूँ और foreground रंग के रूप में सफेद रंग है और आप देख सकते हैं कि लाल here और नीले रंग सभी रंग चैनलों का मान एक समान यानी 255 है
वैसे यहाँ slider पर रंगों से विचलित न हों
यह नीला नहीं है यह पीला है लेकिन मैं एक निश्चित बिंदु तक नीचे slide करता हूँ आप देखते हैं कि सभी sliders स्वचालित रूप से बदल जाते हैं
ठीक है मैं यहाँ ok रंग के slider का चयन करता हूँ और slider को कुछ लगभग 211 तक खींचता हूँ
और मैं वह रंग लेता हूँ जो मुझे मेरी image में foreground रंग के रूप में मिला है और मुझे परिणाम प्राप्त होता है जो मैजंटा के लिए एक तरीका है
लेकिन मैं opacity slider की मदद से अपने हरे रंग के क्षय की तीव्रता को समायोजित कर सकता हूँ
और जब मैं शून्य पर वापस जाता हूँ तो मुझे पुरानी image प्राप्त होती है और जब मैं slider को ऊपर बढ़ाता हूँ मैं image में green channel को कम कर सकता हूँ और image को मैजंटा होने से भी बचा सकता हूँ
मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है
layers tool का उपयोग करके मैं कभी भी वह परिवर्तन कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं हल्के समायोजन भी कर सकता हूँ जब एक से अधिक layers इस पर स्थित होती हैं और परिवर्तन तब भी बने रहेंगे चाहे मैं underlying अंतर्निहित तस्वीर में कुछ परिवर्तन भी कर दूं
इस layer में अभी भी परिवर्तन किए जाने शेष हैं चूँकि यह भूरे रंग की दिखाई देती है और मैं थोड़ा नीला रंग मिलाना चाहता हूँ
पुनः मैं उसी प्रक्रिया का पालन करता हूँ और एक नई layer बनाता हूँ और इसे रंग correction blue नाम देता हूँ
और add मैं थोड़ा नीला रंग मिलाना चाहता हूँ
image में नीला रंग मिलाने के लिए मैं screen mode का उपयोग करता हूँ जो multiply mode की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है
screen mode में रंगों को पहले inverted किया जाता है और फिर multiplied एवं डिवाइड किया जाता है और यह काफी जटिल हैं
add हम foreground रंग को काले रंग में बदल सकते हैं और सीधे उस रंग को मिला सकते हैं जिसे हम मिलाना चाहते हैं और मैं थोड़ा नीला रंग मिलाना चाहता हूँ
अतः blue slider को थोड़ा नीचे खिसकाते हैं
और image में रंग को खींचते हैं
इसे यहाँ नीला माना जाता है जो अभी भी काले रंग की भांति दिखाई देता है किन्तु यह अत्याधिक गहरा नीला है
यहाँ image को देखें और जब मैं इसे switch off करता look तो आपको परिवर्तन दिखाई पड़ता है
image निश्चित रूप से नीलिमायुक्त है
मैं दोनों नई लेयरों को switch off कर सकता हूँ और उसके द्वारा आपको आरंभ बिंदु प्राप्त हो जाता है
जब मैं पहली layer पर click करता हूँ तो हमें हरे रंग का लघुकृत channel दिखाई देता है और जब मैं दूसरी layer पर click करता हूँ तो इसमें थोड़ा नीला रंग मिल जाता है
मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादा नीला है अतः मैं अपारदर्शिता को कम करता हूँ
मुझे लगता है यह अच्छी लग रही है
मैं इसे बाद में कभी भी समायोजित कर सकता हूँ
layer tool बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि आप layers पर layer बना सकते हैं और प्रत्येक layer में आप वे pixels बदल सकते हैं जो निचली layer से ऊपर आ रहे हैं
सुधार करने की संभावनाएं असीमित होती हैं और जब भी आप करना चाहें तो आप यह कर सकते हैं
शायद यहाँ एक अच्छा रंग प्राप्त करने के लिए आप अपारदर्शिता slider को थोड़ा नीचे slide कर सकते हैं और आप इन sliders के साथ कार्य कर सकते हैं जो यहाँ रंग बदलने के लिए असीमित संभावनायें प्रदान करते हैं
मुझे लगता है कि मुझे layers tool को एक विशेष show पर विस्तार से cover करना चाहिए लेकिन आज के लिए इतना काफी है
यह tutorial प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद